इस इमेज में देखिएगा सामने एक शादी का स्टेज दिखाई दे रहा है और यहां पर दूल्हा दुल्हन का सोफा रखा हुआ नजर आ रहा है।

इस इमेज में यहां पर देखिएगा सामने बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है जिस पे शर्मा डा ढाबा एंड गार्डन --

सामने देखिएगा बाथरूम का वाश बेसिन भी दिखाई दे रहा है और दीवार पर एक शीशा भी नज़र आ रहा है।

इस इमेज में देखिएगा यहां पर सामने एक लाइब्रेरी दिखाई दे रही है जहां पर देखिएगा काफी सारी पुस्तकें नजर आ रही है।

इस इमेज में देखिएगा यहां पर सड़क के किनारे एक दुकान बनी हुई है।

इस इमेज में देखिएगा यहां पर जंगल दिखाई दे रहा है जहां पर लाइन से तीन चार लड़के चलते नजर आ रहे हैं।

और पानी के अन्दर रोशनी की परछाईं भी दिखाई दे रही है।

इस इमेज में देखिएगा यहां पर एक सुंदर सा बंगला नजर आ रहा है और बाहर टेबल और कुर्सी रखे हुए हैं।

एक दुकान दिखाई दे रही है।